काला कलर का कुछ दिखाई दे रहा है इसका नंबर प्लेट पीला कलर का दिखाई दे रहा है जिस पर काले कलर से कुछ लिखा गया है पीछे कुछ टावर जैसा देखा जा सकता है अगल बगल हरे हरे पेड़ पौधे देख सकते हैं।

पीछे एक जैसे देखा जा सकता है पीछे कुछ हरे हरे पेड़ पौधे देखे जा सकते हैं ऊपर ब्लू कलर का आसमान साफ देखे जा सकते है जिसपे कुछ सफेद कलर के बादल देखे जा सकते हैं।